पांच मूर्ति एक शेर

सामने पीले कलर की दो चैल लगी हुई है पीछे बैकग्राउंड में वाइट कलर का है दो नील कलर कि खिड़की है एक पंखा लगा है दो ट्यूब लाइट लगी है।

हरे कलर के पेड़ हैउसके सामने बाइक रखी है सामने खली ग्राउंड पड़ा हैआउट साइड में पेड़ उग रहे है।

शायद वोमेन लेडिस और जेन्स खड़े हुए हैं सब लोग --

एक स्टेस्नरी कि दूकान है उसमे बहुत सारी बुक लक रखी है।